टेबल सफेद रंग का दिखाई दे रहा है ऊपर लाइटें जलती दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में खिड़कियां दिखाई दे रही है।

टमाटर गाजर जैसी चीजें दिखाई दे रही है।

सामने एक जानवर दिखाई दे रहा है।